और यहाँ पर वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर सो रहे हैं यहाँ पर लोगों के इंतजार करने के लिए ये चेयर वगेरा लगी हुई --

सीजन के टाइम मे बेचते हैं और ये लो ये गांव के लोग ही ज़्यादातर करते हैं। उनके पास ही इस तरह की जमीन --